इस चित्र में हमें ट्रेंड्स को दिखाया गया है ट्रेंड्स यानी बहुत अच्छी कंपनी जो नामी कंपनी है।

आ क्वॉलिटी अच्छी मिलती है यहाँ पर कपड़ों की और पैसे भी वैसे ही लगते हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि नीचे आ पुतलों को कितने अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं ऊपर भी छोटे बच्चों से बड़ों से और पुरुष म-महिला सबके मिलते हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह एक फर्नीचर की दुकान है। स्टील स्टाइल की दुकान है। यहां पर कई सारी हमें कुर्सियां वगैरा मिलती है अलग-अलग।